यह बहोत ही अच्छी मछलियां हैं। यह समुन्द्र के किनारे से नहीं है। यह सब नदियों के किनारे जिसे आप चाहो उसे खा सकते हैं। यह खाने में बहोत ही स्वादिष्ट। यह पश्चिम बंगाल में मिलती हुई हैं।

यह देख सकते हैं किस प्रकार छत्व के ऊपर सौर्य ऊर्जा लगा हुआ है जो सौर्य ऊर्जा को --

और यह कर्नाटका में उपस्थित है यहाँ पे लोग बड़े चाव से मूवी देखने जाते हैं और बाहर कुछ दुकानें भी लगे होते हैं। धन्यवाद।

आप यहाँ पर जा सकते हैं। बहुत ही कम दाम लगते हैं यहाँ पर जाने के और बहुत ही अच्छा लुक आता है।

पेट्रोल को रिफाइनरी किया जा सकता है यह उद्योग भारत के बहुत विभिन्न प्रदेशों में लगे हुए यहां पर अधिक मात्रा में पेट्रोलों का रिफाइनरी करके शुद्ध किया जाता है और इसके बाद सभी पेट्रोल पंपों पर प्लग किया जाता है सस्ते दामो पे यह बहुत ही किफायति है।

यह वह बच्चे हैं जो अनाथ आश्रमों में रहते हैं और अपने स्किल के बदौलत बहुत ही नाम कमाते हैं देख सकते हैं इस किस तरह दिवाली आने की खुशी में बच्चे अनेक प्रकार के सजावटी सामान बना रहे हैं ।

यह देख सकते हैं बोस सर्विस कार नाम के एक शोरूम है इस प्रकार सारे स्टॉप एक --